सामने एक छोटी टेडी बियर की मूर्ति दिखाई दे रही है।

मुझे यह एक कपड़ों का शोरूम दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी किताबें दिखाई दे रही है।

एक रेडी वाला खड़ा हुआ है।

कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पर बहुत अच्छी कलाकारी की गई है।

काफी सारी पॉलीथिन दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रही है।

एक छोटी सी बल्ली दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ चूने से किरे खींची हुई है।

यह एक घर है इस घर में एक मेज दिखाई दे रही है।